इस पिक्चर में हमें एक मशीन दिखाई दे रही है।

इसको हम पेपर कटिंग मशीन भी कहते हैं।

एक फैन जैसा कुछ दिखाई दे रहा हैं देखने पर हमें ये मटेरियल --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

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

गमले भी पड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं।

आसपास पेड़ भी नजर आ रहें हैं।

इस पिक्चर में हमें एक तलाब नजर आ रहा है।

यहां पर हमे एक ए_सी भी दिखाई दे रा है।

यहां पर हमें एक टेबल पर बहुत सारी बुक्स और डॉक्यूमेट्स पड़ी हुई दिखाई--

इस पिक्चर पर हमे एक घर नज़र आ रा है।

जगी हुई दिखाई दे रही हैं।